एकदम देखिए कितनी मूर्ति बना है कितने रंग का और इधर-उधर देखिए एकदम मस्त कितना सजावट किए है।

इधर-उधर खेत-ऊत है और देखिए उधर खेत कोनहु जुताई हुआ ह जुताई होले है कोनहु नहीं होले हरी-भरी इधर-उधर पौधे हैं।

ये देखिए एक फुटबॉल है जो यहा पर कितना बड़ा ग्राउन्ड है | जिसमें खेले जाते है वॉलीबॉल खेलने जाते हैं और ये कितने मह देखिए आमने-सामने कितने बड़े-बड़े बिल्डिंग है ।

कलर हो रही है ये स्कूल कितने लंबे चौड़े म्म बहोत मस्त ये आमने-सामने देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।